इसका एडमिशन चालू होने वाला है यह काफी छोटा सा स्कूल है।

फाइव क्लास का स्कूल है यह --

यह फोटो केनरा बैंक के ए_टी_एम का है।

यह चित्र एक बोहत सुन्दर उजले रंग के मक़बरे का है।

और यहाँ पर बोहत सरे खिलाड़ी खेलने के लिए आय हुए हैं यहाँ बोहत ही साफ़ मैदान --

यह दृश्य के.एफ.सी. का है।

और यहाँ ग्रे कलर की दीवारें भी हैं। यहाँ कुछ लोग चलते-फिरते हुए देखे जा सकते हैं।